मैं देख पा रही हूं कि मुझे चित्र में बरांडा दिख रहा है।

चित्र में मुझे दो कुर्सियां गोल दिख रही हैं।

मैं देख पा रही हूं कि मुझे बस और गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

चित्र मे मुझे प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे बस पे रक ड्राइवर खड़ा दिख रहा है।

तीन बनी हुई मूर्तियां मिट्टी की दिख रही है।

मैं देख पा रही हूं कि मुझे एक चित्र दिख रहा है।